यहाँ एक बुक स्टाल है यहाँ बूकोका किताब मिलते है यहाँ पर --

यहाँ पर पानी बहुत सारा पानी दिख रहा है और पानी के बाहर झाड़ा दिख रहे है और बादल दिख रहे है और बहुत सारा झाड़ दिख रहे है यहाँ पर --